बाइक खड़ी हुई है इसपे शट रहा है।

यह एक ढाबा है यहां पर बहुत सारी लाइटें हैं।

यहां पर दरवाजे दिख रहे हैं।

बच्चों के लगाने का पाउडर है बड़ों के लगाने का पाउडर है।

पत्थर दिख रहे हैं जोकि अलग अलग कलर के हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति खाना खा रहे हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति इसलिए जा रहे है जिनके हाथ में बाजा--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

कैंटीन के टीन का छोटा सा मकान नजर आ रहा है।

हमें ऊपर की ओर बुक्स नजर आ रही है।

बड़ा पेड़ नजर आ रहा है यह खेत में खड़ा हुआ है।

में यहां पर प्रसाद भी दिख रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति अपनी आंख का चेकअप करवा रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ पानी को देख रहा है।

यहां पानी की टंकी नजर आ रही है।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

ऊपर लकड़ी की सपोर्ट में टीन गिरी हुई है।